जो कि सारी पार्किंग पे छांव कर रहा है और दो गाड़ियां खड़ी हैं।

इस छवि में भारत की एक मछली मंडी दिखाई जा रही है जिसमें बहोत सी महिलाएं--